एंड अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे है बहुत सारे दुकाने भी लगी हुए है में एक्चुअली यह मेला लगे हुए है इधर एंड बहुत सारे घरो के घर है एंड पेड़ है।

ताकि चीजों को अच्छे से रखे रखा जा सके एंड यहाँ पर ब्लू कलर की टूल भी दिखाई दे रहा है एंड वाइट कलर के टेबल भी दिखाई दे रहा है।

अ जो दो लोग काम कर रहे है काम कर रहे है उन दोनों ने पेंट एण्ड शर्ट पहन के रखा है।

एण्ड डिफ्रन्ट टाइप्स के टी-शर्ट एण्ड रखे गए हैं इधर एण्ड जो वाल का कलर है वो है ग्रे एण्ड ब्लैक एण्ड जो --

एक बिल्डिंग की फोटो है जिसमे डिफरेंट टाइप्स के आर्क-आर्किटेक्चर यूज़ किये गया है एंड इसका कलर है व्हाइट ब्लैक एंड जो स्किन कलर है वो।

ये एक स्टेज की फोटो है जहां पे लोग परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एण्ड साइड पे बहुत साउंड बॉक्स एण्ड लइट्स भी लगे हुए हैं जो की रेड कलर एण्ड वाइट कलर के हैं ।

ये एक जिम की फोटो है जहाँ पे जो फ्लोर के कलर है वो वुडेन है।